कुछ बना हुआ है जो नीला कलर का है जिसके नीचे लोग --.

और शादी विवाह में सम्पर्क बुकिंग के लिए सम्पर्क कर सकते हैं या स्थान में रोड अरोधा बलरामपुर में है। .

और यहाँ पे गमले में फूल रखे हुए हैं अलग-अलग कलर के --

यहाँ मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जहाँ --.

पेड़ दिखाई दे रहा है ये बरगद या फिर पीपल का पेड़ होगा जिसकी पत्ती हरी-भरी दिखाई दे रही हैं और यहाँ--